इस पर एल_जी लिखा हुआ है यह कंपनी का ए_सी है।

रैक में समान को रखा गया है यहां पर तरह तरह का--

इस पिक्चर में द वर्दे हॉस्पिटल को दिखाया गया है।